यहाँ बोट में एक आदमी बैठा हुआ है जोकि एक बंसी लेके भी बैठा हुआ है और मछली पकड़ रहा है।

इक बोर्ड लगी हुई है और छत पर कुछ लाइटे भी लटकाई गयी हुई है ।

एगो बहोत ही बड़ा मैदान है ये मैदान में बहोत ही लोग लोग खेल रहे है और बहोत लोग--

उसका नाम राजस्थान बिकनी है और यहाँ पर कंज--

बहोत ही सस्ते दाम में मिलती है यहाँ पे सभी मिठाई यहाँ पर तीन चार कुर्सियाँ भी रखी गयी है और स कुर्सियों का रंग सफ़ेद है।

सेवर सजावट की गई है यहाँ पर सभी लोग--